और बि बिजली का बो खम्बा दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है ।

और से एक दिखाई दे रही है बिल्डिंग जो ऊपर पानी का टंकी भी लगा हुआ --

इस फोटो में एक एंबुलेंस दिखाई दे रहा है एक बाइक दिखाई दे रही है और एक कार दिखाई दे रही है।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

बगल में दो दुकानें लग रही है जिसपे शटर लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक नव निर्मित बा बा बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका कार्य अभी चल ही रहा है।

जिसके दीवार पर स्वीट्स पेट क्राइंग लिखा हुआ है लाइट जल रही है ऊपर भी घड़ी लगा हुआ है।

जो किसी पार्क में खड़े हैं और सेल शायद फोटो खिंचवा रहे हैं पीछे हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है ।

जहाँ पे टेबल दो लैपटॉप चार-पांच कुर्सियाँ दिखाई दे रही है एक वाई --